और ऊपर से एक एयरोप्लेन क्रॉस कर रहा है ।

साथ में सब्जिया बहुत ताज़े है ।

शिव जी का मंदिर के सामने एक त्रिशूल भी लगाया गया है।

मंदिर है साथ में वहां पर एक --

इस तस्वीर मे पार्क दिखाया जा रहा है पार्क में बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए गए है।

शुरू किया गया है साथ में वहां पे एक आदमी खड़ा है जो की हाथ में कुछ लिए हुए है।

इस तस्वीर मैं चौक-चोरहा का पिक्चर दिखाया जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे --

साथ में उस झंडे के नीचे किसी --

होटल के सामने कई लोग खड़े है और --

साथ में वहां पर बहुत बड़े पेड़-पौधे लगाए है ।

वहां पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है जिस लाइट से --

दो-तीन तल्ले का है उस बिल्डिंग का कलर .

दिवार दिख रही है जो की--

इस विवाह भवन में लाइटे लगायी गयी है जो की रेड ब्लू ग्रीन कलर का है ।